पिछाड़ी जू झील छ दिखेणी एक आदमी छ जू साइकिल पर छू आणू वैकि आधी साइकिल छ आयीं इमेज पर छ दिखेणी पिछाड़ी बिटिन घास भी दिखेणु वो भी छोटू छोटू।

दगड़ियों ई तस्वीर पर हम देख सकदों ई तस्वीर पर जू नौनी छिन स्कूल की उंकी एक ड्राइंग छ बणाई काफी सुन्दर ड्राइंग छ योंकि बणाई।

अर कितबियों की दुकानि मा आराम से बैठी छा अलग-अलग खांचा भी छन यूं क बणाया जै पर अलग-अलग किताब भी छन रखीं।

पिछाड़ी बिटिन एक बुढया जी छन उ टी.वी पे न्यूज़ छन देखणा और एक कुर्सी छ ये पर और एक सिसा भी छ लगायूं ।

बाकी लोग जो छ बाल-बुल छन कटोना अर एक बार्बर भी छ ये पर बैठ्यूं पिछाड़ी जु छ टेलिविजन आराम से चलन छ लग्यूं।

अर बल पिछाड़ी बिटिन जू छ मैं पाणी भी छ दिखेणु बहोत सुन्दर छ ये झील छ नाओ भी छ यख दिखेणी ये पर।